सामने एक क्यू_आर कोड स्कैनर रखा हुआ है।

और सामने दीवार का कलर व्हाइट है।

और सामने एक कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारी मशीन रखी हुई है।

बोर्ड का कलर सफेद है।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

सामने एक रिमोट रखा हुआ है और एक टी_वी लगा हुआ है।

और सामने बहुत सारा लाइट भी लगा है लाइट का कलर भी पिंक है।

सामने दो गमला भी है।

जहां आलमारियों में बहुत सारी किताब रखी हुई है।

और सामने एक घर भी है।

दिवाल का कलर व्हाइट --

इस फोटो में हमें दो टेबल दिख रही है।

ऊपर में एक पंखा लगा हुआ है।

जहां सामने एक घर दिख रहा है घर का कलर व्हाइट है।

उसके सामने एक ओटो भी आ रहा है जिसका कलर पीला है।

इस फोटो में बहोत सारी तस्वीर सामने रखी हुई है।

और सामने दीवाल है दीवाल का कलर व्हाइट एंड --

शटर का कलर ब्लू है।

एक औरत दिख रही है औरत का दुपट्टा का कलर पिंक है।

जिसका कलर नीला है।

बोतल में एक पाइप रखा हुआ है।